इस तस्वीर में हमें एक हाॅल दिखाई दे रहा है।

इसके ऊपर नीला आसमान और बादल दिखाई दे रहे है।

पत्थर के साइड में दूर देखने पर बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

इसके बाहर कुछ छोटे छोटे से डिब्बे रखे हुए हैं।

मंदिर के साइड में एक खंभा लगा हुआ है उस पे तारे गई हुई हैं।

और बहोत सारे अन्य लोहे की ग्रील लगी हुई है बाहर के साइड में--